दो टेबल दिखाई पड़ रही है जो की ब्रॉउन कलर में दिख रही है एक स्टूल दिखाई पड़ रहा है जो की ग्रे कलर में है ऊपर दीवाल का कलर ब्लू कलर में दिखाई पड़ा रहा है साइड में रेड कलर दिखाई पड़ रहा है।

साइड मे रेलिंग लगी जोकि सिल्वर कलर मे दिखाई पड़ रही है सामने एक दीवार दिखाई पड़ रही जो की ब्लू कलर और ब्लैक कलर की दिखाई पड़ रही सामने कुछ पेड़ भी दिखाई पड़ रहे जो की ग्रीन कलर ब्लैक कलर मे दिख रहा ऊपर आसमान ग्रे कलर का दिखाई पड़ रहा है।